ऊपर सीढी है ऊपर में जाने के लिए घंटाघर है घंटाघर में जाने के लिए भी सीढ़ी है और--

एक हैं नुआपड़ा का पंचायत समिति कार्यालय नुआपड़ा है।

और पैंट वायलेट कलर पहना है गंजी पहना है और एक बच्चा ब्लैक कलर का शर्ट पहना है सीमेंट कलर का पैंट पहना है और ग्रीन कलर का सब गाछ लग रहा है।

और पेप्सी का कैट कैरेट्स जो रखा रचा रखा जाता है बाहर--

अच्छा साफ सुथरा पानी है और जंगल भी है अ बड़ा बड़ा गछ है।

रेक में बस सजाया हुआ है सारा और पेटी वगैरह भी है उजाला का पैकेट है।

अं कुछ पिंक कलर पहने हैं कुछ येलो कलर पहने हैं और डांस स्टेप में खड़े हुए हैं।